बस स्टॅंड है।

रिसेप्शन एरिया बना हुआ है बोर्ड लगा हुआ है।

टेबल लगा हुआ है टेबल पर सामान रखा है लाइटे जल रही है कुर्सी है।

सुंदर दिखने वाली कुर्सियां लगी है कुर्सियों पर डिज़ाइन बने हुए है टेबल है लोग है।

बिल्डिंग है बिल्डिंग का एंट्री गेट बना है साइड में पौधे लगे हुए है गमले लगे है।